ये फर कई सारी खिड़की छन यखमा जी हरयु-भरयू मैदान च हरयु-भरयू घास च उगयुं यखमा कई सारा लोग छन।

यख मा जी एक दुई कार छन यख मा जी एक स्कूटी छ लगीं यख मा जी रेलिंग छ।